फरनिचर की शॉप है जो पूरा वाइट टाइलसो की बनी हुई है और यहाँ पर फैन वागेरह लगे हैं | बहुत ज्यादा लाईटिंग है।

एक पार्क है | पार्क के अंदर एक ब्लैक कलर का कुछ स्विमिंग टाइप का बना है उसके अंदर बड़ी सी एक है ना पिक्चर बनी हुई है।

ये होटल विशाल है | बहुत बड़ी बनी हुई है | यहाँ पर लाइट ही लाइट है | रात का टाइम है पूरी तरफ की लाइटे जल रही है। यहाँ पर--

यहा पर एक भगवान की बनाई गयी है झांकी जो की हरे लाल पीले कुर्स से बनी हुई है और इसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि यू_पी बिहार के तरह लग रहे हैं और यह लोग सब सायद रैली निकाल रहे है।

छत है छत के उपर है ना सेंटिंग डली हुई है और ये बन रही है और यहाँ पे हमें बहुत सारी लगी हुई हैं और ना लकड़ी की सेंटिंग है।